यह एक बहुत बड़ा हॉल है जहाँ पे टेबल और चेयर लगे हुए हैं। टेबल काफी डिजाइनर है और चेयर भी डिजाइन किया हुआ है। यह सफेद रंग का है और ऊपर से पंखा भी लटक रहा है जो चल रहा है।

खुला आसमान है जो सफेद दिख रहा है और दूर में एक टावर है जिससे फोन का सिग्नल लगता है। यहाँ पे झूले हैं जो बच्चे झूलकर बड़े मजे कर--

और यहाँ पर तेल का डब्बा भी है और यहाँ पे रंग-बिरंगी डब्बे हैं जो लाल बेंगनी काला पीला बुलु अ गुलाबी सब --